एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और यहां पे एक कंप्यूटर है।

इन बहुत भी मिलती है।

ब्लूटूथ लगे हैं फिंगरप्रिंट फिंगर्स वाला प्रिंट करने वाला बहुत सा सामान लगे हुए--

इसमें बहोत से ड्रॉवर बने हुए हैं और डस्टबिन रखा हुआ--

यहां पे बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं और सब्जियां बेच रहे हैं बहुत सारी साग है।

दूर-दूर तक मछली है गेट है बहुत सारे सामान रखें हुए हैं यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई बहुत सारे टमाटर है बहुत सारे फूल वूल भी बेच रहे हैं लोग बैठ के।

बस है और बहुत सारे मोबाइल नंबर लिखे हैं में घर बना है उस पे बहुत से लरी लगी हुई है।

पिंक रोज व्हाइट रोज लगे हुए हैं बहोत अच्छा सा डेकोरेट किया पोल है दूर दूर तक गाड़ी--

और उसके उपर में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और उससे बहुत तारे कनेक्ट हैं और उसपे लिखा --

और घंटी लगा हुआ बड़ा बड़ा सा मंदिर है।

बहोत सारे अच्छे से मैट लगे हुए हैं हैंगिंग के कपड़े टांगने के टंगा हुआ बहोत सारे कपड़े टंगे हुए है पाउडर से जॉनसन बेबी शैंपू ब्राटूट--

ये एक बड़ा सा बैड लगा हुआ पलाई का बैड बनाया गया बॉक्सेस वाला।

गुलदस्ता है बहोत सारे समान रखी हुईं लाइटें रखी और तार लाइटों से सजाया गया है।

एक आदमी है जो रिसेप्शन पे गया है जहां पे दिल बनाके फूलों से डेकोरेट किया गया है अलग अलग फूलों से बहोत सारी लाइट लगी गजरा लटका--